और इस हाल में बहोत सारे गुब्बारे लगाए हुए हैं और कुछ लाइटें और पंखे भी लगे हुए हैं।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां एक घर बनने का कार्य हो रहा है।

और कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर रहा है।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह यहां साम का टाइम है।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते है यह एक बहोत बड़ा फील्ड है और इस फील्ड पे --